और उनके ऊपर पानी छिड़क कर रखा है जैसा लग रहा है।

गुलाब के पत्ते भी दिख रहे हैं और पीछे व्हाइट कलर का कुछ भी है।

पीछे एक पोस्टर पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा भी लिखा हुआ है और बहोत सारे बैलूने भी है।

बहुत सारे रैक रेडमी रेडमी फाइव ए और अनेक फोन दिख रहा है। और फोन का कवर भी दिख रहा है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है।

पर्दे का रंग ग्रीन कलर लग रहा है।

घर जाने वाले रास्ते पर टाइल्स लगे हुए हैं।

घर के पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

इस तस्वीर पर मुझे एक गाड़ी और जे_सी_बी दिख रहा है और ट्रक भी।

आगे कुछ घर भी है।

और कुछ बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहा है।

यहां दो औरत दिख रहे हैं।

का दीवार व्हाइट कलर से पेंट है।

वॉल और गेट रेड कलर का है।

दरवाजा टीने से बना हुआ है।

ऊपर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

बहुत सारे फोंस इयरफोंस भी दिख रहे हैं।

साइड पर लोहे से बने हुए रेलिंग्स भी है।

वॉल का रंग हल्का गुलाबी है।